देख रहे हैं और साइड पे रास्ता है रास्ता है मे दो ऑटो --

चल के जा रहे हैं देखने के लिए मिलता है--

और बहोत सारे पेड़ भी देखने के लिए मिलता है पेड़ ग्रीन कलर के हैं बहोत अच्छा दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में देखने को मिलता है कि--

बहोत सारे लड़के कुछ प्रैक्टिस कर रहे है और रास्ता हैं रास्ते पे कुत्ता जा रहा है।

करसते हैं रास्ते पे कुछ लोग जा रहे हैं साइट पे बहोत सारा जंगल पेड़ है।

भी गया है दिखने को मिलता है ख--

किंग बॉटल रखा गया है वाटर बॉटल भी रखा गया है हॉर्लिक्स बॉटल भी रखा गया है बचने के लिए और केक बिस्किट --

पार्किंग जगह है जहां पर की डिफरेंट डिफरेंट कलर की कार सब पार्किंग मे--

सब व्हाइट कलर की डेक्स पड़ा है और वाटर बॉटल भी कुछ रखा गया है टेबल के ऊपर पीछे भी कुछ वाटर बॉटल रखा गया है कुछ बैग्स भी रखा गया है ऊपर --

अर डिफरेंट डिफरेंट फूल सब रखा गया है बेचने के लिए।

डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की मोबाइल रखा गया है कीपैड मोबाइल स्मार्टफोन सभी।

किंडर जॉय रखा गया है फ्रंट पे दिख रहा है। चाकल चॉकलेट के डब्बे भी है।

पानी की तरह दिख रहा देख रहा है।

इस फोटो चित्र को देखने को मिलता है कि एक जिम सेंटर है जिम सेंटर लाइट कलर का दीवार है।

सब सजा के शेल्फ पे रखा गया है डब्बे में भी कुछ रखा गया है छोटे-छोटे गिटार भी है एक बैग भी दिख रहा है।

ओढ़िया पे कुछ लिखा गया है।

फूल पौधे भी लगाया गया है दिखने के लिए बहुत सुंदर दिख रहा है।

जो की जंगल की सुन्दरजता को बढा--

साइट पे अभी और एक चेयर पड़ा है और वाटर बॉटल टेबल पे रखा गया है कोई--

पेड़ है बहोत सुंदर दिख रहे है साइड पे बड़ा बड़ा पेड़--

सुंदर से कारीगर ने बनाया है ब्लैक कलर ब्लैक कलर की--

यह फोटो की तो में देखने को मिलता है कि बड़ा सा गनपति का मूर्ति है।

एक ऑफिस दिख रहा है इस पिक्चर में ऑफिस में--

खाता भी रखा गया है बहुत सारा फाइल वगैरह भी है और--

इस फोटो में दिखने को मिलता है कि एक दोकान है दोकान में फूल मालाएं है।

नीचे की तरफ जा रहा है पानी सड़ पे बड़ा बड़ा पेड़ है और ये--

इस पिक्चर में देखने को मिलता है बड़ा बड़ा सा पत्थर--